एक टेबल बिछी हुई है। टेबल के ऊपर दो प्लेट में पुलाव से भरी हुई है और चम्मच भी रखी हुई है और साइड की प्लेट से खाली --

दिख रही हैं। टेबल के ऊपर पानी की बोटल थम्स अप की बोटल कांच का गिलास चम्मच टिशु पेपर दिख रहा है। एक औरत के हाथ दिखाई दे रहे सामने।

तीन लड़का दिखाई दे रहा है। दो दो लड़का दुकान के बाहर है एक लड़का दुकान के अंदर है। तीनो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर पंखा चल रहा है।

और आदमी के पीछे बहुत सारी पानी की बोतल दिखाई दे रही है और पीछे के तरफ एक फ्रिज रखी हुई दिखाई दे रही है।

स्टेचू के नीचे से एक बाइक जा रही है। कुछ आदमी जाते हुए दिखाई दे रहे है। चारो तरफ हरे-भरे पेड़-पोधे दिख रहे है। पीछे एक बड़ी-सी मस्जिद ऊँची-सी मस्जिद दिख रही है।

आ- फोटो खींचते हुए नज़र आ रहा हैं और पीछे के तरफ भी और दो लड़के दिख रहे हैं। सामने बोहोत सारी मशीनें रखी हुई हैं जिम करने के लिये।

और उस तरफ भी एक लड़का सामने बैठा हुआ है और उसके बगल मे एक लड़का दिख रहा है काले रंग का टी-शर्ट पहने हुए ऊपर पंखे लगे हैं। साइड मे लाइटे जल रही हैं बहुत खूबसूरत।

सामने एक कांच की टेबल बिछी हुई है टेबल के ऊपर चार प्लेट रखे हुए हैं और एक अंबाती रखी हुई है आ उम जो खाली प्लेट दिख रही है मतलब खाने के बाद जो झूठा होता है वैसी दिख रही है सामने एक --

ऐ सफेद रंग का शर्ट पहने हुए हैं। ऊपर खुला आसमान दिख रहा हैं और बिल्डिंग में थोड़े-थोड़े पेड़-पौधे भी निकले हुए है।

यह एक अह- क्लास रूम के अंदर की तस्वीर है और बड़ी सी एक हॉल रुम दिख रही है। जहाँ कुछ बच्चियाँ नीचे बैठ के अपना हाथ का काम कर रही हैं चार्ट पेपर से।